यह चित्र एक नाई के दुकान का है इस चित्र में दो लोग नजर आ रहे हैं एक नीले रंग के कपड़े ओढ़ कर बाल कटा रहा है।

मूर्ति का रंग सफेद है वह मूर्ति पर फूलों से बनी मालाएं भी चढ़ाई हुयी हैं।

वह सामने की और भीम राव अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक बाजार का हैजहां से एक ए_टी_एम नजर आ रहा है वे बाहर की और कुछ वाहन खड़े नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक पार्क का है इस चित्र में कई रंग बिरंगे झूले लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जहाँ पर दा चेन्नई सिलक्स लिखा हुआ है शीशे में से है स्त्रियों के कपड़े लगे हुए नजर आ रहे हैं बाहर की ओर कुछ वाहन भी खड़े नजर आ रहे है।

यह चित्र एक दुकान का है जहाँ पर अनेक वस्तुएं रखी नजर आ रही है आगे की ओर एक लाल व पीले कलर का डमरू रखा हुआ नज़र आ रहा है।

यह चित्र एक कार्यक्रम का नजर आ रहा है जहाँ नीचे की ओर हरे रंग का मैट बिछा हुआ है व चार लड़कियां लाल व नीले रंग की साड़ियां पहनकर कुछ अभ्यास करती हुई नजर आ रही है।

यह चित्र एक मछली दुकान का है जहाँ पर दो औरतें बैठी हुयी हैं वह पीछे की और एक लड़का काम करता हुआ नजर आ रहा है मछली नीले रंग के कपडे के ऊपर रखी हुयी नजर आ रही हैं।

यह चित्र एक पूजा स्थल का है जहाँ पर एक भगवान की बहुत बड़ी सुनहरे रंग की मूर्ति बनायीं गयी है वह सामने की ओर कुछ पुरुष पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक संगीत कार्यक्रम का नजर आ रहा है जहाँ पर दो लोग हाथों में इंस्ट्रूमेंट लेकर उसे बजाते नजर आ रहे हैं वह एक औरत बीच में गाती हुयी नजर आ रही हैं।